व्हाइट कलर की सफ़ेद चार पहिया गाड़ी दिख रही है वह गाड़ी --

हॉल बना हुआ है | उसमे एक कांच के फ्रेम से बना हुआ एक ऑफिस बना हुआ है और उसमे टेबल डली हुई है | उसपर एक --

शोरूम है हुंडई उस हुंडई शोरूम में फोर व्हीलर गाड़ी रखी हुई है और व्यक्तियों खरीदने --

इस वीडियो में सामने एक पिंजरे का हॉल बना हुआ है उस पिंजरे के हॉल में एक --